यहाँ पर बहोत अच्छे-अच्छे एक कलाकारी के चांदी के कुछ अच्छे-अच्छे डिजाइन बनाये हुए हैं जो कि बहोत अच्छे सुंदर-सा लग रहे हैं और ये बहोत ही --

अच्छी दिख रही है। यह लैब में अच्छे से प्रोवाईड किया गया है और यह एक अच्छे तरह से एक पूरी कम्प्लीट लैब बनाया गया है।